यहां पर हमे एक खंभा दिखाई दे रहा है अगल-बगल मे बिल्डिंग है जो ग्रीन पिंक कलर से पेंट की गई है यहाँ पर कपड़े सुख रहे है कुछ कपड़े गिर गये है निचे कचड़े है।

पेड़-पौधा लगा है बहुत सारा नारियल का पेड़ है।

यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बहुत बड़ी खम्बा लगा हुआ है पेड़ लगे हुए है घास लगे हुए है तार दिखाई दे रहा है बहुत सारा और लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

हमे यहाँ पे बहुत सरे बोरे दिखाई दे रहे है जो सफ़ेद रंग के है और बहुत सारे मजदुर है जो काम कर रहे है इधर पत्थर-पत्थर जैसा कुछ रखा हुआ है जिसे बोरे में भरा जा रहा है एक ट्रक है जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है।